एक गार्डन दिखाई दे रहा है यहाँ पे उस गार्डन में बहुत ही अच्छी ख़ासा घास दिखाई दे रहा है और उस घास पे बैठने पे लोग मनोरंजन करे ग्राउंड टाइप का दिखाई दे रहा वहाँ पे बोहत सारे व्यक्ति भी बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

बहुत ही अच्छा हरियाली हरियाली हरा हरा ग्राउंड दिखाई दे रहा पार्क टाइप का दिखाई दे रहा है। यहां बोहत सारे पेड़ पौधे दिखाई--